पास में बहुत सारी मशीनें रखी हुई है एक लैपटॉप रखा हुआ है एक कंप्यूटर भी है और एक मशीन है जो प्रिंटिंग मशीन है।

कुछ व्यक्तियों ने सफेद रंग के कपड़े पहने हैं कुछ बच्चे और औरतें भी यहां पर है एक घड़ी लगी है जिस पर ट्रेन की --

के ऊपर एक गेट भी बना हुआ है अंदर एक कांच लगे दुकान के गेट कांच का है अंदर बहोत से --

एक बड़ी बिल्डिंग है जिसके नीचे बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं यह बिल्डिंग तीन या चार मंजिला है इसके ऊपर दो पोस्टर लगे हैं।

कैफे में सजावट के लिए माला और गुब्बारे भी लगाए गए हैं एक बाहर स्पीकर भी रखा हुआ है।